वो ऊंचे काफी ऊंचे स्थान पर लगी हुई है। उसके पीछे एक पेड़ लगा हुआ है।

बगल में एक लड़का खड़ा है और यह पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में जो कि एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है रोड के किनारे।